ये एक आदमी हैं जिसने रेड कलर की शर्ट और--

ये कोई म्यूजिक रूम या शूटिंग रूम लग रहा है।

कुछ लगा हुआ है शायद ये खेल का मैदान है।

यहां पर बाहर अभी कोई नहीं दिख रहा।

यहां पे अंदर टेबल टेनिस खेला जा रहा है।

और यह घर पहाड़ की किसी--

और यह मंदिर बहुत सुंदर है।

यहां शराब की दुकान है यहां पर तरह तरह की वाइन रखी गई है।

और यहां पर बहोत से दर्शक बैठे हैं जो खेत का--